मछलियों का कलर सफेद है। दो क्रैट रखे हैं जिनका कलर येलो हैं।

काउंटर के पास आदमी खड़ा है जो लैपटाप में काम कर रहा है दो आदमी आपस मे बात कर रहे हैं।

यह एक मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है जिसमें काफी जीने बने हुए हैं।

यह एक काफी बड़ा मॉल है इसकी दीवारों का पेंट कलर सफेद है।

इसमें मिट्टी की खुदाई की गई है और इसमें लाल लाल ईंटे बिछाए गए हैं।

हरी हरी घास लगी हुई है इसमें प्लेग्राउंड भी बना है।

सामने बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है शेर पीले और भूरे कलर का है।

इसमें लकड़ियां की खिड़की लगी हैं और इसका पेंट कलर ब्लू है।

यह एक बड़ी सी पार्क है जिसमें पानी का फुहारा दिखाई दे रहा है।

यह बड़ा इमामबाड़ा है जिसकी छत का पेंट कलर व्हाइट है और दीवार का लाइट ग्रीन है।

यह एक फॉरेस्ट है जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

चार लड़कियां एक लड़का बैठा हुआ है जो अपना क्राफ्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक बहोत बड़ी नदी है जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ है।

कुछ चेयर दिखाई दे रही है जिनका कलर ग्रीन और पिंक है।

यह एक शादी के जयमाला का स्टेज है जिसपे दूल्हा खड़ा हुआ है।

उसके सामने एक बड़ी सी सड़क है जिसपे कुछ गाड़ियां आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं।